इस चित्र में मुझे बहुत सारी लाइटिंग दिख रही है कार दिख रही हैं बहुत सारे लोग बैठे हैं।

इस चित्र में मुझे एक मस्जिद दिख रही है। बहोत बड़ा मिनारा दिख रहा है। हरे कलर का दिख रहा है।

बहुत सारे पेड़ हैं बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारी घास दिख रही है।

कार दिख रही है खड़ी हुई बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है बहुत सारे घर बने हुए हैं।

इस चित्र में मुझे महाऋषि उत्सव भवन दिख रहा है जिसमें बहुत सारी चेयर्स लगी हुई है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।

एकअअ गाय दिख रही है आसमान दिख रहा है।

आसपास अअ बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं पहाड़ पे--

एक बड़ा सा मैदान दिख रहा है मैदान के उस तरफ पहाड़ दिख रहा है।

इस चित्र में मुझे कोई टॉकिंग टावर दिख रहा है जिसमें लोग चेयर्स पर बैठे हुए हैं।

इस चित्र में मुझे संत श्री बापू आश्रम दिख रहा है।

बहोत से खजूर का पेड़ लगा है उस तरफ बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं बहुत बड़ा सा एक गेट बना हुआ है।

दुकानें दिख रही हैं बहुत सारी मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं बहुत सारे लोग जा रहे हैं बहुत सारे खड़े हुए हैं।

इस चित्र में मुझे एक केरम बोर्ड दिख रहा है जिसमें एक इंसान केरम खेल रहा है।

बहोत सारररा घास लगा हुआ है ऊपर आसमान दिख रहा है।

इस चित्र मे मुझे एक रेस्टोरेंट दिख रहा है जिसमे बहोत सारे टेबल कुर्सी लगे हुए हैं।

और जैन छात्रवास बहुत बड़ा सा एक --

बहुत सारे बच्चे प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं।

इस चित्र में मुझे बहुत बड़ा सा एक गार्डन दिख रहा है।

बहुत सारा पार्क दिख रहा है घास लगी हुई है पेड़ लगे हुए हैं।

घास दिख रही है तालाब दिख रहा है एक लड़का ब्रिज पर खड़ा हुआ है।

इस चित्र में मुझे वनविहार का गेट दिख रहा है।

बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं सड़क दिख रही है गाड़ियां दिख रही है एक बड़ा सा गेट दिख रहा है जिस पर हिंदी में वन वेहाल लिखा हुआ है।